इस चित्र में एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

यह एक बैंक की बिल्डिंग है जिसका नाम--

यह एक मंदिर का चित्र है जिसमें--

ऊपर आसमान और पेड़ भी है।

और इसमें दो स्लाइस भी हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है।

और एक पेड़ भी दिख रहा है।

यह एक ईमारत का चित्र है जो लाल रंग की हैं।

जिसे बहोत अच्छे तरह से सजाया गया हैं।

यह एक रोड का चित्र है।

और कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

यह चित्र एक रोड़ का चित्र है।

जिसमें कुछ बच्चे डांस करते हुए दिखाई दे रहे है।